इस फोटो में मुझे लाइट दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे किराने और जनरल स्टोअर की दुकान दिखाई दे रही हैं।

फोटो में मुझे खिड़की दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे झंडा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे मोबाइल टॉवर दिखाई दे रहा--

इस फोटो में मुझे दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे फुग्गों की सजावट दिखाई दे रही--

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे कटोरियाँ दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बाइक और ऑटो दिखाई दे रही है।